इस फोटो में अअ लोग बोटिंग कर रहे हैं इसमें चार लड़कियाँ हैं और एक लड़का बैठा है लड़कियाँ अ सब --

पिक्चर मे सामने एक इंडियन रेल्वे कि ट्रेन है जो नेवी ब्लू कलर की है उसमें सफेद और ऑररेंज पट्टी है जिसपे लिखा गया है सफेद पट्टी पे लिखा गया है इंडियन रेल्वे |

ये कोई साउथ का सीन है क्यूंकि सामने नारियल का पेड़ हम देख सकते हैं और बहोत ही धुंधला सा फोटो है एक दम क्लियर नहीं है।

और हाँ इसमें बहुत से स्ट्रक्चर लगे हैं एक ये है ए रसियों से --

और कुछ स्ट्रक्चर रखे हुए हैं पीछे कुछ पौधे भी उगे हुए हैं और नीचे --